जैसा कि मैं देख पा रही हूं यह एक बहुत ही पुरानी जगह है यहां पर छोटी-छोटी --

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यहां पर एक बहुत ही पुराना मकान बना हुआ है।

दरियां बिछी हुई है यहां पर बहुत सारे लोग बैठे भी हुए हैं और कुछ लोग नमाज पढ़ रहे हैं।

कपड़ों की मदद से सजाया गया है।

समुन्द्र के बीच बहुत ही सारे झाड़िया है और यहाँ पर एक नाँव है यह दृश्य बहुत ही लुभावना लग रहा है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यहां एक बहुत ही बड़ा हॉल है यह हॉल खाली है।

इसका नाम पूरा है यह बहुत ही सुंदर तरीके से --

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यहां पर कुछ व्यक्ति बैठकर और एक व्यक्ति खड़ा होकर --

मछलियो को काट और छाट रहा है यहा पे बहुत सारे मछलियो को काट काट के खून निकाल रखा है।

पांच फूलदान है एक हरे का रंग का है एक गुलाबी रंग का है एक --

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यहां एक घर जो कि खपटों का बना हुआ है यहां पर --

खड़ा करके उस पे गोलाकृति बनाई गई है यहां पर कुछ झंडे भी लगे हुए हैं।

जैसा की में दिख पा रही हु यहाँ पर बहुत ही सुन्दर सुन्दर घर बने हुए है यहाँ पर कुछ मंदिरो में --

जैसा की में देख पा रही हु यहाँ पर छोटे छोटे घरो की छोटी छोटी सी मिट्टी ये इमारते --

और लॅपटॉप रखे हुए है यहाँ पे बहुत सारे टेबल है यहाँ पर बहुत सारे कुर्सीया है यहाँ पर बहुत सारे पंखे भी है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यहां पर एक एटीएम है यहां पर लोग पैसा निकलवाने आते हैं।

खड़े हुए है यहाँ बहूत ही प्यारी नक्काशकार्या हो रखी है।

पहिया वाहन चल रहे हैं यहा पर बहुत सारे लोग चहल पहल कर रहे है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यह एक पार्टी हॉल है यहां पर बहुत ही सारे लोग आ रहे हैं।

हुए हैं यहां पे बहुत ही प्यारा सजाया गया है यहां पे गुलाबी हरे सफेद लड़ियां लगाई गई है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यहां पर एक बहुत ही पुराना गुफा है यहां गुफा पे --

पहाड़ पर हरी हरी घास उगी हुई है यहां खाली मैदान है आसमान में एक पैराशूट उठ रहा है।

जैसा की मैं देख पा रही हूँ यहा एक बहुत ही बड़ा समुंदर है समुंदर के आस --

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यह एक रेल सुरंग है यह सुरंग --

किलोमीटर तक है यह सुरंग बहुत ही पुरानी है सुरंग में पूरी तरफ से अंधेरा ही अंधेरा है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यहां पर बहुत सारे लोग क्रिकेट का मैच देखते हुए उसका --

टाइटैनिक जहाज का है यहां जहाज के आगे तिरंगा झंडा लगा हुआ है।